ये चित्र मा हम ते एक बड़ी दुकान छा दिखेण लगीं जै का भितर हम ते कुछ जैकेट अर कुछ निक्कर छ दिखेण लग्यां।

एंच छत पर हम ते चदर सी दिखेण लगीं दुकानि का भितर कुछ रैक छन जुं का एंच पाणी की बोत्तली अर जूस की बोत्तली छ ओर पोर कुछ कुरकुरा भी दिखेण छ लग्यां।